कुत्थि पे बैठ के अपनी --

इसमें बिस्किट्स मैगी पर्क और भी बहुत सारे सामान हैं ट्यूबलाइट लगाया गया है और हरे रंग --

यह किसी बड़े नदी की तस्वीर है।

यहाँ बहुत सारी बाइक्स लगी है लगाई गई है एक फोर व्हीलर है बहुत सारे घर है फूल है टोटो है और पेड़ है और --

यह किसी मार्केट की तस्वीर है जहाँ उस मार्केट में बहुत सारे दुकान हैं उसके आसपास सारे दुकान के बोर्ड लगाए गए हैं बाइक्स लगाई गई हैं कार है और दुकानों के ऊपर में शीशे के खिड़कियाँ लगाई गई हैं।